और यहां पर ऊपर की ओर कुछ बिजली के तार भी जा रहे हैं।

इस फोर लेन पर एक एंबुलेंस भी जा रही है।

पीछे की ओर से यहां पर एक मोटरसाइकिल भी आ रही है।

पीछे की ओर यहां पर कुछ बिजली के खंभे भी खड़े हुए हैं।

इस मंदिर के ऊपर की ओर एक पीतल का कवच भी लगा रखा है।

और नीचे की और इस मंदिर के पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

और यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटिंग भी लगी हुई है।

और यह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और ऊपर के साइड दीवार पे कुछ बल्ब भी लगे हुए हैं।

और यह व्यक्ति बहुत सारे हैं और यह व्यक्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे--

यहां पर एक सोफा भी रखा हुआ है।

इस लेडीज के मुंह के आगे एक माइक भी लगा रखा है जोकि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

जिस दुकान के बगल साइड में एक लोहे का जाल भी रखा हुआ है जिस जाल में बिस्कुट के पैकेट लगे हुए हैं।

इन कट्टों को एक बहुत ही बड़े ट्रक में डाला जा रहा है और यहां पर तीन आदमी भी खड़े हुए हैं।

इस नदी के ऊपर एक पुल बना रखा है इस पुल पर पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

जो की ये ये नहां भी रहे हैं।

यहां पर कुछ रखी है यहां पर एक लवे का गेट भी लगा हुआ है।